इस चित्र में हम देख सकते हैं की आ कुछ लोग भरतनाट्य के वेस में तैयार हए हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं एक दुकान है पुस्तकों की दुकान --

इस चित्र में हम देख सकते है कि चार लड़कियां आ- तैयार होकर वो नृत्य का एक अमम नृत्य का एक स्टाइल कर रहें हैं वो --

इस चित्र में हम देख सकते है कि एक लड़की लाल लहंगा पहन के और काला टॉप पहन के --

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि एक अस्पताल है वहाँं पे नर्स और कुछ गा --

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ल कुछ लेपटॉप और कुछ टेबल्स रखे हुए हैं जिस पर --

और बच्चे उनके पीछे खड़े रहकर तस्वीर खिंचवा रहे हैं अपनी।

अ हाथे बंधे हुए वो एक तस्वीर खिंचवा रहा हैं किसी और के साथ ।

मच्छी मार्केट है यह और बहोत से लोग मछली बेचते है यहाँ पे और बहोत लोग यहां से खरीदते हैं अलग-अलग रंग के मछलिया --

इस चित्र में हम देख सकते हैं की रास्ते में कुछ कर्मचारी रोड सर्वे कर रहे हैं।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि कुछ अ लोग इकट्ठा हुए हैं और वहाँ पे कुछ भाषण हो रहा है।

और सभी लोग उसको द गौर से सुन रहे हैं औरते म महिलाये पुरुष सभी इक्कठा हुए हैं |

चित्र में देख सकते हैं कि विवाह हो रहा है औ पूजा हो रहा है।

आ जहाँं पे स अ कुछ अ फल-फूल रखे हुए हैं और पंडित जी उन्हे कुछ समझा रहे हैं।

चित्र में हम देख सकते है कि दुर्गा मां की अ मूर्ति को रास्ते मे घुमा रहे हैं और कई सारे लोग इक्कठा हुए हैं।